चारों तरफ से एक दिवार लगी है बनी है दिवार जिसमें कुछ ग्रिल जैसा दरवाज़ा भी लगा है इसमें एक औरत जो खड़ी है वो हमें दिखता है |

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा ही सुंदर ग्रिल दिख रहा है एक लकड़ी का दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है।

ठीक पीछे बड़ा ही भव्य पेड़ नजर आ रहा है एवं आकाश भी काफ़ी साफ़ नजर आ --